बहुत सारी औरतें हैं।

यहां पर गिलास पर ग्लास ग्लास पर ग्लास रखा हुआ है और इसे सजा कर रखा हुआ है जैसे लग रहा है कि यह एक पहाड़ है।

और अगल-बगल बहुत सारे कचड़े फेंके हुए हैं।

लेटे हुए हैं बैठे हुए हैं और--

और यह हरी-हरी घासों पर भी रेंग रही हैं ।

जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सेंड मनी अवॉर्ड लिखा हुआ है।

जैसा कि आप--

साइड में एक सांइकल जैसी मशीन भी रखी हुई है।

और बहुत सारी चीज़ें--

जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं।

आगे में आ रही हैं।

सुंदर भी बनाया।

यहाँ पर एक रेस्टोरेंट बनाया जा रहा है ।

जो--

जहाँ बहुत सुंदर-सुंदर गुलदस्ते रखे हुए हैं और यहाँ पर कुछ--

यह एक गैरेज लग रहा है।

इंगेजमेंट या फिर शादी की--

एक सैलून है।

आदमी है एक जो बाल काट--

छह आदमी आए हुए हैं।

और एक पेंसल भी--

कि यहाँ पर के_ए_डी _ए_के कड़क--

ऊपर एक पंखा भी लगा हुआ है।

कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि--

जो एक इंसान बोरी लादकर--

अंदर ले जा रहा है।

यहां पर देख सकते हैं कि यह एक--

जहाँ पर कितने सुंदर पेड़-पौधे हैं।

यहाँयह एक किराना स्टोर है।

चिल्ड्रन पार्क लग रही है।

और भी आकर्षित बना रही हैं ।

जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि--

जैसा कि आप यहाँ पर--

जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह एक--

जैसा कि आप--

यहाँ पर देख सकते हैं कि--

जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि--

यह एक म-ज़िद लग रही है।

जिसके ऊपर पंखा लगा है।

जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह एक फूलो--

की दुकान लग रही है जहाँ पर बहुत सारे फूल रखे हुए हैं।

जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं।

जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि--

जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह एक--

आप यहाँ पर देख सकते हैं कि--

बहुत सारे झूले भी लगी हुई हैं।

य हाँ एक रेस्टोरेंट लग रही है जहाँ--

यह एक वाटर पार्क लग रहा है।

और साइड में कुछ रेस्टोरेंट भी है।

जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं।

कि यहाँ एक-दो मैकेनिक --

का कुछ बना हुआ है ।

जहाँ पर काफी कुर्सियाँ लगी हुई हैंजहाँ--